यहाँ एक मस्जिद है जोकि सफेद कलर की है और ये बहुत अच्छी दो से तीन मंजिला मस्जिद है और उसका जो गेट हैवह बहुत बड़ा हैं।

आ ये एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है और अंदर से यह पूरी व्हाइट कलर की है और यहां पर पिलर भी वाइट कलर के है और राउंड यहां पर पिलर है ऐसी काफी सारी खिड़कियां दिखाई दे रही है।

अ ये एक पार्क जैसा लग रहा है और यहाँ पे बैठने के लिए बहुत अच्छे से क अ इंतजाम किया गया है एक हरे कलर की कुर्सी यहाँ दिख रही हैं।